मुझे यहां पर इंसान की पोस्टर नजर आ रही है इन पोस्टरो में इंसान का चेहरा ब्लर है।

मुझे यहां पर एक मंदिर नजर आ रही है।

मुझे यहां पर खिरकियां भी नजर आ रही है।

इसंगों में दे हेरिटेज एकेडमी लिखा हुआ है मुझे यहां पर एक सीढ़ी भी नजर आ रहा है।

मुझे इस फोटो में आसमान पूरा ब्ल्यू दिखाई दे रहा है मुझे इस फोटो में पहार भी नजर आ रही है।

मुझे यहां पर फैमिली दिखाई दे रहा है मुझे इस फोटो में एक स्विच बॉक्स में दिखाई दे रहा है मुझे यहां पर एक डस्टबिन भी दिखाई दे रही है।

मुझे यहां पर एक इंसान नजर आ रहा है।

यहां पे मुझे दो पुलिस वाले भी नजर आ रहे हैं मुझे इस फोटो में पेड़ भी नजर आ रही हैं।

इस फोटो में दो बिस्तर दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में एक वेटिंग मशीन नजर आ रहा है।

मुझे इस फोटो में आसमान सफेद दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में गाड़ी भी दिखाई दे रही है।

यहां पर डी_एस_पी सोडा एंड काफी शॉप लिखा हुआ है।

इन फोटो में आदमी लोग का फेस ब्लर्र है।

मुझे इस फोटो में दो बोट नजर आ रही है।

यहां पर एक बोट का कलर ब्लू है।

मुझे इस फोटो में एक लंबा घर नजर आ रहा है।

मुझे इस फोटो में ढेर सारी लड़कियां नजर आ रही है।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

मुझे इस फोटो में दो बास्केट भी नजर आ रहा है।

इस फोटो में दीवारों का कलर सफेद है मुझे यहां पर एक डोनेशन बॉक्स भी नजर आ रही है।